और यहां पे कुर्सी टेबल लगाई गई है सीटिंग के लिए काफी प्यारी जगह है यहां पे आप खुद देख सकते हैं साफ-सुथरी।

कटोरा लगाया गया है और यहां पे रेलिंग है।

और बहुत सुंदर बना हुआ है यहां पे कुछ जेंट्स तो कुछ लेडीसे यहां पे खड़ी है जो फोटो क्लिक कर रहे हैं देख सकते हैं यहां पे।

बहुत प्यारी बिल्डिंग है यह काफी सुंदर लग रही है इसके पास यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे गार्डन है उनमें कुछ पेड़ पौधे बने हुए हैं।

यहां पे हमे स्टेट बैंक का ए_टी_म दिखाई दे रहा है ए_टी_म के बाहर हम देख पा रहे है एक आंटी खड़ी है जिनका चेहरा छुपाया गया है।

पेट्रोल पंप पे हम देख पा रहे हैं काफी सारी भीड़ है सभी यहां पे पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं आस-पास आप देख सकते हैं।

पेड़ भी यहां पे है और यहां पे कुछ अंकल आंटी है जो कि आराम से रेस्ट कर रहे है आप खुद देख सकते है।

यहां हम देख सकते हैं हमें एक बगीचा टाइप का दिखाई दे रहा है और इस बगीचे में आप देख सकते हैं काफी चट्टानें हैं।

जैसा कि हमें आपको देखने को मिल रहा है यहां पे रंगत्ता हॉस्पिटल है हॉस्पिटल आप देख सकते हैं काफी बड़ा सारा है उसके बाहर यहां पे कुछ गाड़ियां हमें देखने को मिल रही हैं।

यहां आप देख सकते हैं यहां पे एक बहोत बड़ा झील है झील के बीच में ये रास्ता दिखाई दे रहा है वहां पे कुछ पब्लिक है।

यहां पे हर चीजें मिलती है जैसे कि किताब पेंसिल ।

काफी प्यारी फैसिलिटी इधर एक डॉक्टर खड़ी है जो कि यहां पे देख लीजिए अंकल से बात कर रही हैं।